यहां पे कुछ लिखा हुआ है यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं कुछ लोग बाइक पर बैठे हुए हैं और सबके पास --

आसपास पेड़ पौधे और पहाड़ी इलाका लग रहा है नीचे समुद्र भी है जिसका पानी एकदम ब्लू कलर का है।

को सजाया हुआ घर दिख रहा है यहां पे नोटिस लगी हुई है व्हाइट अक्षरों में लिखी हुई है चॉक् से ब्लैक बोर्ड है।

और यहां पर बहुत सारे फोटोज भी है जहां शिवजी पार्वती माता की गणगौर की मूर्तियां --

यहां कोई इंसान नहीं दिख रहा है ना ही कोई जानवर दिख रहा है यहां व्हाइट कलर का पाइप लाइन भी लगी हुई है।

यहाँ अनाज और गेहूं के कट्टे रखे हुए हैं यहां बाहर मेथी दाना मेथा लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारी धूल हो रखी है यह कोलगेट की फोटो है।

हम्म जो रास्ते बने हुए है विंडो लगी--

यहां पे एक साइकिल रखी हुई है एक बाइक रखी हुई है यहां पे गेट लगे हुए हैं डार्क ब्राउन कलर के जिसमे ताला लगा हुआ है।

यहां आसमान भी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है यह एक मुसलमानों की मस्जिद लग रही है।

और यहां उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है पंखा लगा हुआ है ग्रीन कलर की दीवार बनी हुई है पास में बहुत सारी कैंपर रखे हुए हैं।

यह आसमान येलो केसरिया इंद्रधनुष की तरह दिखाई दे रहा है हल्का हल्का --

यह अमूल डेयरी है यहां पे अमूल सामान मिलता है आइसक्रीम चॉकलेट डेरी मिल्क और सब --

यह एक स्टेशन है रेलवे या इंडिया रेलवेज --